नीचे जमीन मे हल्की सी घास है। बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। सामने एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है। उसका पूरा अक्ष पानी में आ रहा है।

बड़ा-सा रास्ता दिया हुआ है नीचे की तरफ पहाड़ है बहुत सारे आसपास पहाड़े जीने जैसे बने हुए हैं। नीचे जगह-जगह घरे रास्ते बने हुए हैं बहुत दूर-दूर और बहुत ही ऊँचे -ऊँचे पहाड़ों पर घर बने हुए हैं।